और कुछ लोग बैठे और कुछ खड़े हैं।

बल्लभ और पंखा भी दिखाई दे रहा है।

ए_सी का कंप्रेसर लगा हुआ है।

और पढ़ रहे है पीछे बहोत सारा सामान दिख रहा है।

कुछ फूल गमल में लगे हुए हैं।

रखे हुए हैं और बहोत सारे--